जैसे की अपन देख पा रहे है यह एक मोर नजर आ रहा है और मोर --

हाथी अअं नजर आ रहा हैऔर हाथी के ऊपर बैठा हुआ --